और काला काला पेहन के सारे के हो रहा है काले रंग का दिखाई--

बड़ी बड़ी सीनरी दिखाई--

यहां बहोत बड़ी शॉप नजर आ रही है।

यहां एक आदमी खड़ा है।

और वहां पंखे भी लगे हैं बहुत सारे आदमी बैठे--

जैसे नालों में पानी भरा हुआ वैसे पानी भरा है और बस भी खड़ी है।

यहां काला काला दुकान हो रही है।

दोनों आदमी खड़े हैं। टी_शर्ट पहन के एक बड़े से चारट है एक दुकान है।

बहोत अच्छा लग रहा है।

बहुत बड़ा है बहुत सुंदर लग रहा है।

फोटो में लाइट है लाइट बहुत बड़ी है।

बहोत सुंदर नजारा है बहोत अच्छी लग रही है।